यहां एक बहुत बड़ा इंस्टिट्यूट है जैसा की हम देख पा रहे है की इंस्टिट्यूट के आगे बहुत बड़ा गार्डन है।

यह एक मसिज्द है और इस मसिज्द के आस -पास बहुत बहुत सारे पेड़ वगेरा है और इस मस्जिद के सामने कुछ गाड़ियां पार्किंग है और कुछ कार भी पार्किग है।

और बहुत सारे लोग घूम ने आये है और यहा की जगह बहुत ही मस्त है और यहा का मोसम भी बहुत--

और इस नदी के अंदर एक बेफ रनर है जिसके ऊपर दो जने बेठ कर रनिंग कर रहे है।